जमोल एप्लीकेशन में मेजरमेंट्स एंड लेबलिंग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोअल्काने के मॉडल्स बनाना
सिंबल के साथ मॉडल में परमाणुओं को लेबल करना और नंबर देना
बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल और डाइहाइड्रल एंगल्स नापना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि जमोल एप्लीकेशन में आणविक मॉडल्स को कैसे बनायें और एडिट करें
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टुOS वर्जन 1204 जमोल वर्जन 1222 जावा वर्जन 7 अब अच्छी तरह स्टेप्स समझते हैं कि इस एनीमेशन का प्रयोग करके कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे बनाया जाता है एक उदाहरण की तरह हम इथेनोइक एसिड का मॉडल बनाएंगे जिसे सामान्यतः एसीटिक एसिड भी कहते हैं
हम इथेन के मॉडल के साथ शुरू करेंगे
हमें मिथाइल ग्रुप्स में से किसी एक को कार्बोक्सिल ग्रुप में बदलना है
उसी कार्बन परमाणु से जुड़े दो हाइड्रोजन्स को हाइड्रॉक्सी ग्रुप से बदलें
एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन्स मिटायें
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलें
मिथाइल ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप में बदला जाता है
देखें कि इथेन इथेनॉइक एसिड से बदल गया है
हम उपरोक्त स्टेप्स का अनुसरण करके जमोल एप्लीकेशन में इथेनोइक एसिड का मॉडल बनाएंगे
यह जमोल पैनल पर इथेन का मॉडल है
अब मिथाइल ग्रुप को कार्बोक्साइल ग्रुप में बदलते हैं
मॉडेलकिट मेन्यू से ऑक्सीजन सिलेक्ट करें
उसी कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन्स पर क्लिक करें
अब मॉडेलकिट मेन्यू में डिलीट अतोम विकल्प के सामने टिक करें
ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन को मिटायें
और कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को भी मिटायें
फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड लगाते हैं
अब मॉडेलकिट मेन्यू में डबल विकल्प टिक करें
और कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ने वाले बॉन्ड पर क्लिक करें
हमारे पास स्क्रीन पर एसिटिक एसिड का मॉडल है
स्ट्रक्चर को उपयुक्त बनाने के लिए एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करें
हम नाइट्रो ग्रुप बनाने के लिए समान युक्ति का अनुसरण करेंगे
यहाँ इथेन के मॉडल के साथ जमोल पैनल है
अब इस अणु को नाइट्रो इथेन में बदलते हैं
मॉडेलकिट मेन्यू पर क्लिक करें और नाइट्रोजन के सामने टिक करें
इथेन अणु में हाइड्रोजन परमाणु पर क्लिक करें
नाइट्रोजन परमाणु नीले गोले की तरह दिखता है
आगे हम नाइट्रोजन से जुड़े दो हाइड्रोजन्स को हाइड्रॉक्सी ग्रुप से बदलेंगे
मॉडेलकिट मेन्यू पर क्लिक करें और ऑक्सीजन के सामने टिक करें
फिर नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन्स पर क्लिक करें
ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन्स मिटायें
मॉडलकिट मेन्यू खोलें और डिलीट अतोम के सामने टिक करें
ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन पर क्लिक करें
अब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे
मॉडलकिट मेन्यू में डबल विकल्प पर टिक करें
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ने वाले बॉन्ड पर क्लिक करें
अब पैनल पर नाइट्रोइथेन का मॉडल है
एक नियत कार्य में 1 बुटानोइक एसिड और इथाइलेसिटेट के मॉडल्स बनायें
एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करके स्ट्रक्चर को उपयुक्त बनायें और इमेज को सेव करें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
अब जमोल पैनल पर वापस जाते हैं
यह स्क्रीन पर 1 बुटानोइक एसिड का मॉडल है
अब मॉडल में परमाणुओं को लेबल करना सीखते हैं
हम ऐसा एलिमेंट से सम्बंधित सिम्बल के साथ करते हैं और उनको नंबर देते हैं
डिस्प्ले मेन्यू खोलें और स्क्रोल डाउन मेन्यू से लाबेल सिलेक्ट करें
एलिमेंट से सम्बंधित सिंबल के साथ सारे परमाणुओं को लेबल करने के लिए सिम्बोल विकल्प सिलेक्ट करें
नामे विकल्प सिंबल और नंबर दोनों देगा
नंबर विकल्प केवल परमाणुओं की नंबरिंग देगा
नोने विकल्प प्रयोग करके मॉडल से लेबलों को हटा सकते हैं
हम उपरोक्त सभी रूपांतरण पॉप अप मेन्यू प्रयोग करके भी कर सकते हैं
पॉप अप मेन्यू खोलने के लिए पैनल पर राइट क्लिक करें और भिन्न भिन्न विकल्प जाँचें
अणु में कोई दो परमाणुओं के बीच की दूरी टूल्स मेन्यू प्रयोग करके नापी जा सकती है
नापने से पहले मॉडलकिट मेन्यू खोलें और मिनिमाइज पर क्लिक करें
अब एनर्जी मिनिमाइज़ेशन हो गया है और मॉडल सर्वाधिक स्थिर कान्फॉर्मेशन में है
अब टूल्स मेन्यू पर क्लिक करें डिस्टेंस यूनिट्स सिलेक्ट करें
आवश्यकता के अनुसार सब मेन्यू से विकल्प सिलेक्ट करें
उदाहरण के लिए मैं एंगस्ट्रॉम चुनूँगी
अतः बॉन्ड लेंग्थस जो मैं नापती हूँ एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में होंगी
रोटेट मॉलिक्यूल आइकन पर क्लिक करें और कर्सर को पैनल पर लाएं
मैं 9 और 4 परमाणुओं के बीच की दूरी नापूंगी
पहले शुरुवाती परमाणु पर डबल क्लिक करें जो कि परमाणु नंबर 9 है
ठीक नापने के लिए अंतिम परमाणु पर डबल क्लिक करें जो कि परमाणु नंबर 4 है
अब स्क्रीन पर बॉन्ड लेंथ प्रदर्शित होती है
अब बॉन्ड लेंग्थस की कुछ और नाप लेते हैं
अब कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ नापते हैं
अतः परमाणु नंबर 5 पर डबल क्लिक करें और कर्सर को परमाणु नंबर 7 तक लाएं और इस पर डबल क्लिक करें
उसी प्रकार अब कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की दूरी नापते हैं
अतः परमाणु नंबर 5 पर डबल क्लिक करें और कर्सर को परमाणु नंबर 6 तक लाएं और इस पर डबल क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सारी बॉन्ड लेंग्थस प्रदर्शित होती हैं
हम मॉडल में बॉन्ड एंगल्स और डाइहाइड्रल एंगल्स को भी नाप सकते हैं
उदाहरण के लिए हम परमाणुओं 9 4 और 1 के बीच बॉन्ड एंगल्स नापेंगे
परमाणु नंबर 9 पर डबल क्लिक करें और फिर परमाणु नंबर 4 पर क्लिक करें
एंगल की ठीक नाप लेने के लिए परमाणु नंबर 1 पर डबल क्लिक करें
हम देख सकते हैं बॉन्ड एंगल्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है
अब माना परमाणु 1 5 और 6 के बीच बॉन्ड एंगल नापते हैं
परमाणु 1 पर डबल क्लिक करें परमाणु 5 पर क्लिक करें और अंततः परमाणु नंबर 6 पर डबल क्लिक करें
टॉर्शनल या डाइहेड्रल एंगल की नाप में चार परमाणु प्रयुक्त होते हैं
अतः हम परमाणु 8 41 और 2 चुनेंगे
डाइहेड्रल एंगल की नाप के लिए पहले परमाणु नंबर 8 पर डबल क्लिक करें
परमाणु नंबर 4 पर क्लिक करें और फिर परमाणु नंबर 1 पर
अंत में डाइहेड्रल एंगल की ठीक नाप लेने के लिए परमाणु नंबर 2 पर डबल क्लिक करें
हम देख सकते हैं डाइहेड्रल एंगल की नाप स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है
सभी ली गयी नापों की वैल्यूज़ सारणी की फॉर्म में देखी जा सकती हैं
टूल बार में क्लिक अतोम टो मेजर डिस्टेंस आइकन पर क्लिक करें
पैनल पर मेजरमेंट्स डायलॉग बॉक्स खुलता है
यह अभी तक की सभी नापों की सूची रखता है
अब हम इमेज सेव कर सकते हैं और एप्लीकेशन एग्ज़िट करें
इसको सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोअल्काने के मॉडल्स बनाना
एलिमेंट के सिंबल से मॉडल में परमाणुओं को लेबल करना और नंबर देना
बॉन्ड लेंग्थस बॉन्ड एंगल्स और डाइहाइड्रल एंगल्स नापना
एक नियत कार्य में सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ अणुओं के मॉडल्स बनायें
कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड लेंग्थस नापें
और उनकी तुलना करें
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद